सामने एक जमीन दिखाई दे रहा हैं जहाँ पर ट्रांसमिसिन लाइन गई हुई है और उस स अ नदी है उसके अगल-बगल पेड़-पौधे लगे हुए--

और बहुत सारे लोग भी जा इधर-उधर जा रहे हैं।